जो ऑरेंज कलर की है सामने टिने की दीवार लगी है ऊपर एक छत भी है।

इस गार्डन मे बहोत सारे पौधे लगे हुए है।

एक गाड़ी खड़ी है जिसका कलर लाल और ब्राउन है.

यह एक दुकान है जहाँ पे कार का काम चल रहा है.

यहाँ पर छत का काम चल रहा है.

और एक सफेद आसमान दिखाई दे रहा है.

साइड में दो गमले रखे हुए हैं जिनमें--

सामने बहोत सारी नीले कलर की कैरेट रखी हुई है.

दुकान के अंदर बहोत सारी वस्तुएं रखी हुई है।

यहाँ पर रेतगिट्टी का काम चल रहा है और तीन मजदूर काम कर रहे हैं.

युवक खड़े हैं दो युवक बाइक चला रहे हैं.

यहां एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है जिसका गेट खुला है और एक युवक भी दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर गेम खेल रहे हैं यहाँ सफेद लाइटें भी लगी है.

जहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है.

एक रस्सी भी दिखाई दे रही है और एक टायर भी है.

साइड में एक युवक है जो कुछ काम कर रहा है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक बैग भी दिखाई दे रहा है और एक जैकेट है दूर एक युवक फोन में बात कर रहा है।